यहाँ पर जी.आर. प्लाज़ा है।

और यहां पर इसके अंदर कोल्ड्रिंक किए हुए यहां पर वो रखे हुए है फ्रिज है यहां पर इसके अंदर कोल्ड्रिंक रखी हुई है यहां पर कुछ औरते यहां पर भीड़ लगाए समान ले रही है अंदर से।

ये एक गार्डन का फोटो है यहां पर ये शादी हॉल और गार्डन है यहां पर एक फॉर्महाउस जैसा बना हुआ है ये।

और यहां पर पहाड़ है और यहां नीचे कुछ घर बनें हुए हैं छोटे-छोटे और यहां डेम के अंदर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है यहां पहाड़ी इलाका है।

यहाँ पर हॉस्पिटल दिया हुआ है काफी बड़ा है वो है कॉलेज है यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है यहाँ पर एक छोटा सा गेट दिया हुआ है।

यहां पर टेबल भी हैं यहां पर एक कैफे भी है यहां पे कॉफी वगैरा भी और यहां केक --